बांध टाईप का दिखाई दे रहा है यहाँ पर बड़े-बड़े पत्थर लगे हुए हैं ऊपर रेलिंग भी लगी हुई है लड़का खड़ा है ब्लैक टी-शर्ट है जिन्स है ब्लू इंजॉय कर रहे है पानी बह रहा है पानी साफ़-सुथरा है।

चारो बगल फोटो भी लगी हुई है। फादर का --